यहां पर सिर्फ बच्चा और एक आदमी है जो फोटो खिंचा रहे हैं उधर के साइड पे एक दीवाल है और पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

उधर पर कुछ लोग खड़े हुए उन्हें देख रहे हैं और यहां पर फूल लगा हुआ है जिसका कलर लाल ऑरेंज और येलो है।

सामने के साइड पे एक बोर्ड है जो ब्लू कलर का है और तार भी दिख रहा है इधर के साइड में पेड़ है उधर के साइड पे भी पेड़ है।

बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं और कुछ लोग फोटो भी घिन्च रहे हैं एक पेड़ भी है।

एक बहुत बड़ा मशीन है जिसमें बहुत सारे तार लगे हुए हैं।

पे एक मुझे आइसक्रीम खाने दो आइसक्रीम रखने वाली मशीन ।

ब्लू कलर का बोर्ड भी दिख रहा है तीन उधर के साइड पे तीन टंकी भी है उधर के साइड पे पेड़ है।

उत्तर का जूता भी है एक उधर घर है एक पोल खूंटा भी है यहां पास।

इधर बांस बीली लगा हुआ है सीढ़ी बना हुआ है उधर की साइड पे एक पेड़ दिख रहे है।

इस चित्र में कुछ लोग दिख रहे हैं ।

ये बहुत सारे बॉस भी दिख रहे हैं ऊपर पे एक तिर तिर्पा तिरपाल है।

टाइल्स भी नीचे लगा हुआ है ऊपर भी टाइल्स लगा हुआ है एक पिलर दिख रहा है एक टी_वी भी है।

इस चित्र में कुछ लोग दिख रहे हैं जो कुछ बैठे हुए कुछ खड़े हैं।

कुछ बोतल भी दिख रहा है बैग भी रखा हुआ है।